यहाँ पे खिडकियाँ हैं छोटी-छोटी लोग बहुत अराम से इत्मिनान से बैठे हैं। उनको अच्छा लग रहा है। एक नीले कलर की शर्ट है फर्श है। फर्श खुरदुरा लग रहा है। कुछ बुक्स रखी हैं।

और रेलवे के ब्रिज का रिफ्लेशन आ रहा है नदी में कुछ पिलर बने हुए है पिलर में स्टेप वाईज पिलर बने हैं ताकि आपको नदी की गहराई और नदी की बहाव का पता चल सके ताकि बाढ़ आ रही हो तो उस माप से ऊपर जाए तो बाढ़ आने की शंका --

उस संग्रहालय में यहाँ पे लोग ये काच के आवरण अंदर रखे है छोटे-छोटे ताले है जोकि सुरक्षा के लिए है लेकिन ये कभी भी टूट सकते है इसमें रिफ्लेक्सन आ रह है टूयुव लाईट का।